और सब्जी का दलीय है दलीय है ब्रोंज लगा हुआ है ब्राउन कलर में--

झोंपड़पट्टी जैसे बना हुआ है ऊपर आसमान मे।

ये एक बहोत बड़ा मैदान है और मैदान में --

जहां पे लिखा है साइलेंस प्लीज --

शादी कार्ड और इसके बाहार दो एक बाइक और एक एक्टिवा भी है बोर्ड भी लगा हुआ है।

ये बहुत बड़ा हॉल हे हॉल में यहा पे --

साइकल चल रही हैं और मोटर साइकल भी बाजू में हैं।

आसमान है और जो कि कुछ बदल कुछ ब्लू है।

छत को डाला जा रहा है यहाँ काफी सारे लोग है।

यहाँ मंदिर हैं और मंदिर में तीन प्रतिमा हैं बीच में बड़ी वाली प्रतिमा--

और मंदिर का डेकोरेट काफी सुंदर कलर में कलरफुल में किया गया है।

मंदिर के चारो तरफ हरे भरे पेड़ हैं।

कई लोग बैग लेकर खड़े हुए हैं एक लेडिस भी है बस के सामने फोर व्हीलर भी है।

पुल बना हुआ है पुल के दोनों तरफ--

फ्रेम भी लगा हुआ है काफी सारे आप देख सकते हो फैन भी लगे हुए हैं लाइट भी हैं।

यहां ग्राउंड बहुत बड़ा है ग्राउंड है ग्राउंड के दोनों साइड में बहोत पेड़ है झड़ी है हरे भरे घास है।

और कुछ लोग नीचे टेबल पे निषानेबाज़ी कर रहे है कुछ लोग सामने निशानेबाजी कर रहे है।

यह एक मशीन है मशीन जिस छत को ढाला जाता है।

खाने पिने की चीज़े रखा हुआ है जैसे नमकीन बिस्किट रस्क --

और पेपर्स हैं ढेर सारी यहाँ पे सामग्री रखी हुई हैं पैम्पर रखा हुआ है टोकरी भी हैं।

और ईट की दोनों तरफ पिल्लर है।

वापिस अरे इसमें फ्रेम लगी हुई हे।

तृतिवी लिखा गया है और रोड के बाजु में भी कुछ मकान--

और यहाँ पे बौद्धिक धर्म लोग बहुत सारे है जो सभी आपने पास में एक एक बैग लिए हुए है।

पिलर है पिलर पे सजावट किया गया है रोड के किनारे एक बिल्डिंग है दोनों साइड ।

और दोनों जेन्ट्स यहाँ पे क्रीम कलर मे कुर्ता पहने हुए है।

यहाँ गॅरेज है गॅरेज मे यहाँ गाड़ी बनती है।

इसके आगे भी एक जे_ सी_ बी जा रही है बगल में और उस साईड है जे_ सी_ बी ऊपर नीले कलर का आसमान है।